सफेद रंग की गाड़ी है काले रंग की गाड़ी है ऊपर शेड पड़ी हुई है।

बाहर झूले लगे हुए हैं बड़े बड़े पेड़ पौधे--

वायर्स केबल तार मिलती है सूरज इलेक्ट्रॉनिक इसका नाम है।

दुकान के ऊपर बहोत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है पार्किंग में स्कूटर्स रखे हुए हैं और एक आदमी--

समान को दिखा रहा है रात का समय है साथ में और भी बहुत सारी दुकाने यहां पे--

सभी कलर के यहां पर पर्दे मिल --

बेड रखा हुआ है और मशीनें रखी हुई हैं डेंटिस्ट की एक पंखा लगरा लगा हैं।

पिलर खड़ा है और वो सामने देख रहा है उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई है रात का समय है।

ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है।

और यह मंदिर बहोत ही पुराना और मान्यता--

बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं नीचे गाड़ी पार्किंग के लिए की गई है।

ये एक योगा क्लास है जिसमें बच्चे योगा कर रहे हैं और सामने टीचर उनके--

यह एक कंप्यूटर क्लास है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं और सामने दो कंप्यूटर केबिन के ऊपर के हुए हैं।

दो बच्चे सामने देख रहे है और--

और अच्छा भी लग रहा हैं सुंदर तरीके से इसको सजाया गया हैं पहाड़ी इलाका हैं देखने को सुंदर लग रहा--

ये एक होटल का रुम है जो कि रुम बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत सारा सामान यहां पे रखा हुआ है।

और बहोत ही ज्यादा सामान यहां पे--

है और सुंदर लग रहा है।